ये श्री लाल नारायण किराना एवं जनरल स्टोर है एक व्यक्ति उधर बैठा हुवा है काफी सारे ये रोड के किनारे का दुकान है ।

ये ये कही का नजारा दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है ।

फूल की काफी सारी दुकाने है यहां पे भी फूले बिक रहा है कस्टमर भी खड़ा है ग्राहक फूल खरीद ने का बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है ये फूल खरीद रहे है।